सामने एक जाली दिख रही है जो लाल और सफ़ेद कलर की है और सामने एक खम्बे पे लाइटे लगी है झंडा दिख रहा है सामने एक मंदिर है मंदिर बना हुआ और--

एक बिल्डिंग बनी है जिसके बहार कुछ बाइके खड़ी है और देखिए स्कूटी खड़ी है वाइट कलर की कार है जिस में ब्लैक कलर का हैंडल लगा है।